रोड के किनारे दो मोटरसाइकिल पार्क की हुई है।

यह एक पार्क का दृश्य है पार्क में एक लोहे का गेट है वह ग्रीन कलर का है।

यहां पर बहुत सारी बोड़ी भी रखी हुई है।

सारे करकट अलग अलग रंग के हैं।

इसके पीछे बहोत बड़ा ही एक पेड़ भी है।

यह एक रेस्टोरेंट का दृश्य है रेस्टोरेंट की दीवार का कलर ग्रे है।

रेस्टोरेंट के आगे लिखा हुआ है कावेरी रेस्टोरेंट ।

बस के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और एक लाइट भी लगी हुई है।

रोड पर दो बड़े बड़े झंडा भी लगे हुए हैं।

यह एक पेट्रोल पंप का दृश्य है पेट्रोल पंप की दीवार का कलर ब्ल्यू और वाइट है।

इसके चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

इसके बिल्डिंग पे लिखा हुआ है होटल राही।

यह एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग का दृश्य है।

बिल्डिंग की दीवार का कलर व्हाइट है इसमें बहुत सारे खिड़की बने हुए हैं।

पार्क में एक बड़ा सा मेन गेट भी है वह लोहे का है और वह व्हाइट कलर का है।

टेंपल की आगे बहोत सारे सीढ़ियां बनी हुई है।

सीढ़ियों पर देव व्यक्ति भी जा रहे हैं।